ये एक हॉल है टाइप में है जो कि यहां पे तीन लोग मौजूद हैं एक अंदर की तरफ है। --

यहां के कोई हॉस्टल वगैरह बहुत अच्छा सा बना हुआ हैइसके लिए--

जो कि प्लॉट था यहां पे कुछ मजदूर काम भी कर रहे हैं।

और यहां पर मुक्तलिफ किस्म का फेशियल भी मौजूद है और हेयर कटिंग भी की जाती है।

जोकि बहोत ही खूबसूरत है और यहां पे बहोत सारी बाइक्स भी हैं और यहां पे तीन लोग चार लोग बाहेर भी मौजूद रुके हुएं--

जिसने ब्लैक कलर की पेंट और पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है वो कोई चीज की वीडियो बना रहा--